बछड़े के लिए बाल्टी और बहुत सारा सामान रखा हुआ है चाय से जुडा हुआ सामान और यहाँ पर चाय का बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह डेरी की फोटो लग रही है जहां पर दुध से भरे बड़ी बड़ी टंकिया ल रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक बहोत बड़ी नदी की फोटो दिखाई दे रही है नदी के उस पास कुछ घर और शायद एक मंदिर सा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे एक घास लगी हुई है कही पर हरी घास लगी हुई है और कुछ सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे है।